काफी के कपों में कॉफ़ी पड़ी है साथ में शुगर की पैकेट भी रखे हुए हैं।

जहां पे एक मोटरसाइकिल रिपेयर होने के लिए रखी गई है।

ये किसी लाइब्रेरी का दृश्य है।

यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का गेट है।

और कुछ लेबर और नीचे इन फर्श पे बिछा रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट या कैफ़े लग रहा है।